यह एक नाई की दुकान है।

यह एक गुफा है। यहा पे तीन व्यक्ति तीन चार व्यक्ति खड़े हैं। एक व्यक्ति सेल्फ़ी ले रहा है चश्मा लगाए है।

यहा एक पहाड़ी है जिसके पीछे काफी जंगल है कुछ लोग खड़े है काफी इन्जॉय कर रहे हैं।

और एक व्यक्ति खड़ा है जो --

यहाँ बस स्टॉप है पीछे बसेस खड़ीं हैं। एक व्यक्ति आराम कर रहा है दूसरा उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

छे सब लोगो कि लेडिज है । जैंट्स है मिट्टी पड़ी लाइट की व्यवस्था है। फूल भी हैफोटोस लगी है ।